मुझे यहां पर एक मत्लब एक अच्छा सजा हुआ दिखाई दे रहा है घर मकान

एक सटक भी आई हैजो की कार के नीचे हो आई हुई उस में पेड़ भी दिखाई बादल बिजली का तार दिखाई दे रहा और ऊपर साड़िया भी टंगी हुई हैं सूखने के लिए।